एक गेट भी है जिसका रंग पीला है।

सामने में एक ठेला भी है उसके ऊपर बहुत सारे पानी बोतल है और बहुत सारे समोसे भी है।

पिक्चर में बहुत बहुत बड़े बड़े परदे भी है। इसका रंग गुलाबी पीला --

भी दिखाई मिल रहा है और छत के लिए टीना भी है।

बाहर में एक गेट भी है और एक गाड़ी भी दिखाई मिल रही है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे बिल्डिंग दिखाई मिल रही है।

नीला आसमान भी दिखाई मिल रही है।

बहुत सारे खिड़की भी है।

ये बड़े बड़े पहाड़ भी हैं।

में बहुत सारे प्लेट भी है जिसका रंग सफेद है।

बहोत सारे खिड़कियां भी है और नीला आसमान भी दिखाई मिल रही है।

इस तस्वीर में मुझे बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई मिल रही है।

तस्वीर में मुझे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाई मिल रही है।

अंदर में एक पुरुष है।

जैसे कि बच्चे और जवान लोग हैं।

उसके अंदर बहुत सारे सामान भी है।

उसके हाथ में कंगन गला में माला है।

इस तस्वीर में मुझे एक पुरुष दिखाएं मिल रही है।

उसके अंदर बहुत सारे सोफा और कुर्सियां है और टेबल भी है।

दीवार में बहुत सारी पोस्टर भी है ऊपर में बहुत सारे लाइट्स भी है।